बोहोत सारे पेड़ लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। आसमान में सूरज दिखाई दे रहा है।

एक दुकान पर गर्ग मेडिकल स्टोर लिखा हुआ है और एक कार खड़ी दिख रही है सड़क --

दिखाई दे रही है बिल्डिंग के सामने सड़क है |

इसमे एक बड़ा सा भवन दिखाई दे रहा है भवन सफेद और लाल कलर से पुता हुआ है भवन मे कुछ---